इस तस्वीर मे हमे एक वॉटरपार्क दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

बहुत से लोक दिखाई दे रहे है गाड़ी दिखाई दे रहा है खंभे दिखाई दे रहा है बिजली के और बिजली के तार दिखाई दे रहे है घास दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहा है बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है।